यहां पर रेलवे स्टेशन बना हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर लिखा हुआ है रेलवे रेलवे स्टेशन मे आपका स्वागत है।

यहाँ पर भी एक स्टेशन बना हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक रेलगाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है जिसके बहुत सारे डिब्बे भी रंग-बिरंगे दिखाई दे रहे हैं।

ये भी एक खाना खाने की होटल दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ चम्मच प्लेट रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर।

और कुछ गेट भी लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहोत सारे मैदान दिखाई दे रही है यहाँ पर बहोत सारी टाइल्से भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छा है।

एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक बड़ा दरवाजा लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर गेट लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक तख्ती पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।